जिसमें एक पुरुष हें और उसके पास में एक महिला खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक रूम नजर आ रही है जिसके--

जिसके ऊपर एक बोड लगा हुआ है जिसके ऊपर एक घर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दो पुरुष खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

जिनके बीच में एक ऑटो खड़ी हुई नज़र आ रही है।

तस्वीर मे मुझे एक ठेला नजर आ रहा है जिसके उपर सैंडविच सेंटर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जो की जमीन पर बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक कैफ़े नजर आ रहा हैं।

जिसमें एक लड़का बैठा हुआ है और दूसरा उसकी कटिंग करता हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक पुल नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मैं मुझे एक पुरूष नजर आ रहा हैं।

जिसमें बहोत सारे सामान पड़े हुए हैं जैसे की शैम्पूस क्रीम --

जिसमें एक बेड है जिसके ऊपर पिंक कलर की चादर--

उसके पास में एक ए_सी भी लगी हुई नजर आ रही है।